यहा पर एक बहुत बड़ी इमारत है इमारत के बिछो-बीच एक गॅलरी बनी हुई है पूरी इमारत पत्थर की बनी हुई है और यहा पर बहुत सारी खम्बे भी खड़े हुए है जो पत्थर के है और इनका रंग गुलाबी और हल्का सा काला है।

वही बहुत सारी दरवाजे भी है वो दरवाजों के अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है।

और वही एक छोटासा रोड निकला हुआ है रोड के उपर एक बड़ासा पोस्टर भी लगा हुआ है जिसका रंग सफ़ेद और लाल और नीला है बही एक बहुत बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है जिसका रंग हरा दिखाई दे रहा है।

वही एक बस भी खड़ी हुई हैं जो लाल रंग की दिखाई दे रही हैं मैदान के अंदर छोटे छोटे गड्ढे हैं जिनके अंदर पानी भरा हुआ है वही बहुत सारे पेड़ पौड़े भी लगे हैं जो हरे रंग के हैं।

वही ट्रक के ऊपर एक बड़ासा पोस्टर भी लगा हुआ है जो काले और नीले रंग का है और वही जाली भी लगी हुई है जो सफेद रंग की दिखाई दे रही है और आसमान भी दिखाई दे रहा है।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

जो विभिन्न रंगों की है और आसमान भी दिखाई दे रहा है आसमान का रंग नीला है आसमान मे बादल भी है जो सफ़ेद रंग की है।

जो हरे रंग के है और आसमान भी दिखाई दे रहा है जो नीले रंग --

वही एक बडासा मकान बना हुआ है मकान की दिवारो का रंग हरा और नारंगी है वही एक बड़ासा गेट बना हुआ है जिसका रंग कत्थई और हल्कासा पीला रंग दिखाई दे रहा है।

और यहापर बहुत बड़ा मैदान है मैदान मे बहुत सारे वाहन खड़े हुए है वाहनों का रंग लाल काला सफ़ेद नीला और हरा है।

वही पर बहुत सारे मकान भी बने हुए है जो विभिन्न रंगो के है और सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी पेड़ पौंधे भी दिख रही है पेड़ पौंधे का रंग हरा है और आसमान --

यहाँ पर एक छोटा सा मैदान है मैदान के बाजू में रेल गा-गाड़ी जा रही है रेल गाड़ी के डिब्बे का रंग नीला और सफ़ेद है वही मैदान के पास बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं।

जिह्नोने विभिन्न रंगो के वस्त्र पहने हुए हैं आसमान भी दिखायी दे रहा हैं आसमान नीले रंग का हैं और बादल भी दिखायी दे रहे हैं आसमान में जो सफे--